यार यहाँ एक बड़ा गार्डन है और यहाँ --

वहाँ एक पेड़ भी है कुछ लोग वहाँ बैठे हुए है और यह लाल किले का बेक ग्राउंड बेक ग्राउंड बेक ग्राउंड है।

यहाँ चार स्टूडेंट है जो इस जंगल में आए हैं।

और वहाँ पे बहुत कुछ उनके बारे में लिखा भी है और साइड में दो --

मतलब बैंक में जाते हुए पूरण इनसे भगवान को पूरी करवाते है और इनका स्वागत करवाते है।

यहाँ ज्वेलर की शॉप है जहाँ बहुत सारी ज्वेलरी बैंग्ल्स है सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगाये हुए है।